अमित आइसक्रीम सेंटर भी दिख रहा है।

एक ब्लैक कलर का पाइप भी दिख रहा है।

लगे हुए हैं साइड में एक चप्पल भी है।

मास्क लगाया हुआ है और पिकं कलर का शर्ट पहना हुआ है।

बाहर में बड़े बड़े पेड़ है और हरा भरा घास भी लगा हुआ है।

ब्लैक कलर के प्लेट के ऊपर में--

इसके बाहर में दो व्हाइट कलर की कार दिखाई दे रही है।

जिसमें कुछ लड़कियां डांस करती हुई दिखाई दे रही है।

रंग बिरंगी डिस्को लाइट्स भी नजर आ रहे--

लाल सफेद गुलाबी।

जिसमें अलग अलग प्रकार की--